यहाँ शोरूम है। जहां बोहोत सारे स्कूटी रखी हुई है।

रात हो गई हो यहाँ पे आसमान भी सादा काला की तरह दिख रहा है।

यह एक जमुई का मॉल है मॉल का नाम सुशीला फैशन जमुई है।

जहाँ किड्स वियर लेडीज वियर मेंस वियर सभी तरह के कपड़े मिलते हैं यहाँ एक ब्लू कलर का शर्ट टांगा हुआ है।

मगरमच्छ है जो की पानी में जा रहा है यहाँ पर छोटे-छोटे घास है यहाँ पर पत्थर भी है।

कुछ कस्टमर है जो की बाल कटवाने के लिए बैठे हुए हैं।

यहाँ पे मैगी और भी बहुत सारे समान हैं।

एक बैंक है एच.डी.एफ.सी. बैंक जो की जमुई में है।

यहां पे बहुत सारे पुलिस बैठे हुए हैं।